चाप लिखा हुआ है काउन्टर मे काउन्टर लगा हुआ है सामने एक काले कलर का कपड़ा पहना हुआ एक लड़का खड़ा हुआ है और गुब्बारे लगे हुए है ।

एक जो एक जो अगल बगल दिवारे है जो कैफे सामने काउन्टर के पा काउंटरे है जिसमे समान रखे हुए है।

एक साई कृपा होमएओपथिक के डॉक्टर है बिंदी अंडे ए--

--का जर्मनी बैठते है और आयुर्वेदिक है जिस आय और दवाई का यहाँ दवाइयों का भी दुकान लगा है।

एक बड़ा सा कैफै बना हुआ है जिस कैफै मे अगल बगल दिवारे है सामने दरवाजा जाने का अंदर अ ग गमले भी रखे हुए है ।

--एक जो एक मजदूर खड़ा हुआ है और बादल सफेद काले है ।

जो बड़ा का-स- गेट लगा हुआ है चर्च के सामने जो बड़ा स गेट लगा हुआ है काले कलर का और अंदर साइड मैदान बना हुआ है।